जहां पर उपर ए_सी वाले लगे हुए है दीवार पर कुछ अलग अलग बैनर से लगाए हुए है।

जो की लकड़ी से बास से बनी है।

सामने टारगेट बना हुआ हैं। बच्चों ने तिर्क पक अ तीर पकड़े हुए हैं तीर कमान के साथ--

बिया व्हाइट कलर का बॉक्स है एक में थोड़ा रेड कलर है और एक में ब्लू कलर भी दिख रहा है।

और पूल भी बना हुआ है।

ये एक कमरा दिख रहा है।

और गद्दा जो है वो व्हाइट कलर का हैं।

बिल्डिंग से दिख रही है छत का सीन दिख रहा है।

और पंजाबी में यहां लिखा है।

बीच में फूलगोभी रखी हुई है छलिया भी रखी हुई हैं और तरबूज भी रखे हुए हैं।

साथ में कुछ जंगली का दरवाजा बना हुआ है जाली वाला और कुछ फूलों से सजाया भी हुआ है।